ये देशी लोग नृत्य को प्रस्तुत कर री जो काफी बढ़िया और काफी अच्छा लग रहा है बहोत अच्छे तरीके से सजाया भी गया है।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है। यहाँ पर सभी प्रकार के स्टेशनरी के समान मिलते हैं और यहाँ पर रबर स्टंप भी बनाया जाता है जो --

यह नदी अ आस-पास के गांव में लोग सिंचाई इ आस-पास के किसान के लोग सिंचाई एवं आस-पास के शहरों से सटे हुए लोग इसे पीने के लिए भी उपयोग करते हैं जो काफी अच्छा और यहाँ इस नदी के पानी बहोत साफ रहता है और यहाँ पर मस्त्स्य पालन करने वाले लोग इस नदी में नाव के सहारे मछली भी मारते हैं और अपना जीवन पालन करते हैं।

जिस पर एक छत की ढलाई हो रही है। यहाँ पर अ जनरेटर और उपयुक्त मशीनों के द्वारा इस छत की ढलाई की जा रही है जिसके वजह से कम समय में ज्यादा काम करते हुए भी छत की मजबूती भी अच्छी होगी। इस पर ढलाई से पहले इस पर मोटे-मोटे रड लगाये गई हैं जिससे इसे जंग ना लगे और काफी मजबूत बिल्डिंग बन सके।

मंदिर के लोग दूर-दूर से घुमने के लिए भी आते हैं जो एक यह पर्यटक स्थल भी है और यहाँ काफी भीड़ लगी रहती है और इसके अन्दर लाईटे वगैरह भी लगाई गई हैं जो सुंदर दिखता है।

प्रैक्टिकल करके छात्र और छात्राओं अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते हैं और अच्छी पढाई करते हैं।

और ऐ जिम होल की दुकान है जहां पर लोग अपने जिम को नया जिम को ओपन करते है। यहाँ से सामान को खरीदते हैं और ऐ जिम होल बहोत ही अच्छे तरीके से सजाया गया और एक ट्रक टायर को भी पीले कलर से सजाके काफी बढ़िया और काफी अच्छे तरह से सजाया गया है। यहाँ पर लाईटिंग भी बहोत अच्छी लगाई गई है जो देखने में बहोत बढ़ियां --

यह एक अ अ कोलेज ए-ए का अ-अ डांसिंग अ प्रोग्राम किया गया है जो यहाँ पर कोलेज में --

अ जमीन में अच्छे-अच्छे घांस लगाये गए है और घास को एक आकृति देने के लिए यहाँ पर चारो तरफ अ चोकोर आकार के चलने के लिए रखाया गया है। जिससे घास की बर्बादी ना हो यहाँ पर काफी छोटे छोटे रहस्य और कुरान सामान भी लगाये गये हैं। जो देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।